और यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे खेलने भी आते हैं।

छत पे खड़े हुए हैं और यहां पे एक बहोत बड़ा--

ए_सी लगा हुआ है यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं यहां पे बहुत--

और यहां पे बहोत ज्यादा पंख लगे हुए हैं। यहां पे अलग अलग कलर की लाइट --

ये एक बहोत बड़ा थाना है और यहां पे बहोत ज्यादा पुलिस वाले रहते हैं और यहां पे एक टावर भी खड़ा हुआ है और यहां पे बहोत ज्यादा बड़ी दीवार भी है।

गाड़ी खड़ी हुई है और यहां पे एक बहोत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है और यहां पे बहोत ज्यादा आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पे शोरूम है गाड़ी का और यहा पे ठीक करी जा रही है गाड़ी।

नर्स भी खड़ी हुई है और यहां पे बोर्ड भी लगे हुए यहां पे कांच के शीशे लगा--

और यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे बो रखे हैं और यहां पे बहुत ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं और यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

और यहां पे बहुत बड़े बड़े केबिन बना रखे हैं।

और यहां पे ए_सी भी लगे हुए हैं यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है।

और यहां पर अलग अलग कलर की दरी बिछा रखी है। यहां पर दो कुर्सी भी रखी हुई है और यहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ी नाई की दुकान है यहां पर दो कुर्सी रखी हुई है यहां पर एक बच्चा कटिंग करवा रहा हैं।

ये और यहां पे बड़ी-बड़ी लाइट भी लगा रखे हैं यहां पे बहुत बड़े-बड़े झंडे भी लगा रखे हैं।

एक बहुत बड़ा चौक है और यहां पे बहुत बड़ी बड़े ग्रिल भी लगी हुई--

ये एक बहुत बड़ी जिम है और यहां पे जिम करने के लिए बच्चे आते हैं यहां पे पावडर मिलता है।

ये एक बहुत बड़ा पार्क है और यहां पे बड़ी बड़ी झूला लगी हुई है।

और यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे बो रखे है यहां पे बड़ी बड़ी--